जिसके नीचे से बहोत लोग जा रहे हैं और बहुत लोग अभी वहीं खड़े होकर कुछ न कुछ--

मैं यहां पर एक बहोत बड़ा--

ग्रीन कलर का घर है और--

इ बड़ा है और इसमें अभी कितने कम से कम तुम दस सेकेंड के येनिये कर देती--

पढ़ रहा है और दूसरा लड़का उसे देख रहा है।

ये एक धार्मिक अअ दुकान दिख रही है जिसमें अर गिफ्ट वाली दुकान दिख रही है जिसमें गिफ्ट हैं सारे।